राइट साइड भी कुछ पेड़ दिख रहे हैं दो झील के किनारे एक बड़ा सा मन तीन मंजिला विशिष्ट एक घर भी दिख रहा है।

यह फोटो मे एक मंदिर दिख रहा है मंदिर के सामने एक तालाब भी है।

दुकान के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है दुकान के साम-- दोनों साइड दो ठो कुर्सी पड़ा हुआ है और उस दुकान के सामने एक बाइक पार्किंग किया गया है।

यह फोटो एक तालाब का फोटो है तालाब के किनारे दो तीन ठो बड़े-बड़े पेड़ है तालाब के एक साइड मे--

करपाली जिला कोरबा खेड़ा परिसर एक प्लेग्राउंड है प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेलते हुए दिख जा रहे है ऊपर में एक बिजली का तार भी गया है।

ये फोटो एक दुकान का फोटो है यहाँ बहुत सारे ववव लाइट भी दिख रहै हैं वीवो ओप्पो मिस्टर एंटरप्राइज --

ये फोटो मे आप लोग देख सकते है एक अ बड़ा सा अअअ घर दिख रहा है जहाँ नीचे मार्केट कॉम्प्लेक्स है।